बर्गर्स नूडल्स पिज़ा आदि कई प्रकार की चीजें हैं।

और काफी सुन्दर फूल हैं अन्यथा यहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है और काफी घना जंगल है।

पारले जी मैगी चॉकलेट्स फाइव स्टार और बहोत कुछ नीचे भी बिस्कुट और किस मी टॉफी भी रखी हुई हैं।

जे एक मॉल के अंदर फूड जोन का व्यू है।

चारों तरफ सामान तथा कई औजार बिखरे हुए दिख देखे जा सकते हैं।

कार के सामने स्विजकी कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है।

वहां पर लाइट हाउस जैसा कुछ है और इस साइड छोटे छोटे गिट्टी पड़े हुए हैं।

ये एक ऑटो फाइनेंस का दुकान दुकान दुकान है जो जिसकी अभी ओपनिंग हुई है।

यहां पर एक साइड में कार भी खड़ी है।

यह एक मिठाई की शॉप है यहां पर तरह तरह की मिठाई मिलती है।

यहाँ पर पतझड़ का मौसम है जिसके कारण पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और सब पत्ते नीचे बिखरी हुई है।

यह फोटो बिल्डिंग के ऊपर से ली गई है यहां पर एक छोटा सा पार्क है।

एक पुलिस कर्मचारी खड़ा है ओ और एक इंसान अखबार पढ़ रहा--

यहां पर गाड़ी जाती हुई दिखाई जा सकती है अन्यथा यहां पर कुछ लोग भी जाते हुए देखे जा सकते हैं स्कूटी से और बाइक से।

यह एक बहोत बड़ा गेट है गेट के ऊपर एक गोल्डन कलर की चिड़िया देखी जा सकती है।

ये एक मॉल का व्यू है यहां पर छोटे बच्चों की इलेक्ट्रिक कार और बाइक्स भी मिलती है।

वहां पर एक वर्कर खड़ा हुआ है अन्यथा वहां पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं।

यहां पर तरह तरह के बत्तख हैं जैसे कि व्हाइट और ब्राउन और छोटे छोटे पत्थर और बड़े भी पत्थर है।

यहां पर बहोत सारी कुर्सी और मेजेज पड़े हुए हैं जिन पर टिशूज रखे हुए हैं औ--

पीली खिड़कियां है जिनके ऊपर छोटे छोटे पौधे फूल भी लगाए हुए है। अन्यथा वहां पर लैंप भी है।

यह एक मंदिर है जहां पर डेकोरेशन काफी अच्छा है।

और यहां पर मिरर में दो लोग फोटो ले रहे हैं जो हाथ में गिटार पकड़े हुए है और--

यहां काफी अच्छा डेकोरेशन है और पर्दा भी डाला गया है।

बैनर लगा हुआ है अन्यथा यहां पर चेयर भी पुरानी पड़ी हुई है और बॉक्स भी।

वहां पर ये दो कारें खड़ी हुई है और एक कार जाते हुए देखी जा सकती है।

यह एक ऑफिस का व्यू है यहां पर स्टडी टेबल पड़ा हुआ है अन्यथा--

और यहां पर सी_एन_जी भी उपलब्ध हैं अन्यथा यहां पर चारों तरफ पेड़ पौधे और मौसम काफी शांत हैं।

बीच में डिवाइडर है और यहां खंभा भी लगा हुआ है ना।

यह एक पार्क का व्यू है यहां पर कई सारे लोग बैठ के मस्ती कर रहे हैं।

सामने हैंजर्स ईस्ट्रीट की दुकानें भी हैं।